हां बहुत बड़ा एक कपड़ा का दुकान है जिसमें बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं और बहुत सारे आदमी भी हैं जो बाहर में खड़ा हुआ है।

एक दुकान है जिसमें बहोत सारे समान रखा हुआ है और एक बाहर से कुर्सी भी लगाया गया है।

बहोत बरा एक नदी है नदी में पांच छे लड़का है जो नहा रहा है इसके बहोत साफ साफ पानी भी है।

और ऊपर से एक आदमी खा रहा है और चारों तरफ से घने जंगल है।

एक बहोत बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ जिसमें आदमी सब वहां पे बहोत ज्यादा भीड़ लगाया हुआ है बहोत सारे लाइट भी जल रहा है।

एक जिम क्लासेस जिम क्लास में बहोत सारे मशीन भी रखा हुआ है। बहोत सारे लाइट भी जल रही है।

एक बहोत बड़ा फील्ड है जिसमें बोहोत सारे बच्चा है वो खेल रहा है और बहोत बड़ा एक बिल्डिंग हैं।

एक बहोत बड़ा हॉल है जिसमे एक लड़का है वो सेल्फी ले रहा है और एक पंखा भी लगा हुआ है।

और एक आदमी है जो बाहर में खारा है।

एक बहोत बड़ा एक दुकान है जिसमें बोहोत सारे बल्ब लगा हुआ है और दुगो कुर्सी लगा हुआ है।

और एक लाल कलर का झंडा टंगाया हुआ है।

और टेबल पे पैर रखा हुआ हैं एक पाइप लगा हुआ है।